और उसमें मार्केट लगा हुआ है धूप आ रही है और पर्दा लगा हुआ है आइसक्रीम का फ्रिज दिख रहा है आइसक्रीम दिख रहा है।

अ ऑरेंज है और बॉक्स में पैकेट में दिख रहा है अलग अलग--

पोस्ट ऑफिस बैंक पेमेंट बैंक दिख रहा है पोस्ट ऑफिस का ओओ रेड कलर का--

पिलो है। अ अ खिड़की है। परदे लगे हुए हैं और फोटो से लगे लैंप है।